एक गैरेज है जो की टीना से बनाया हुआ है वो गैरेज के अंदर बहोत सारा सामान है।

और जो लड़का बाइक का सामने में खड़ा है वो जो मेकेनिक है और जो बैठ रहा है वो जो बाइक ऑनर है।

हवा में इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई दे रहा है।

खिड़की के ऊपर में पर्दा लगा के है और वहां ब्लू कलर का बेडशीट है बेडशीट के ऊपर ह्यूमन स्केलेटन सुला के रखा है।

वहां बड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा है जो की लाइट ब्ल्यू कलर कर का है।

और वहां पर थर्माकोल भी दिखाई दे रहा है जिसमें फिश भरा हुआ है और वहां पर बहुत सारा बॉक्स लुक हैं जिसका कलर ब्लू और येलो --

दीवारें जो की टाइल्स में लगा हुआ है।

और इसके पीछे बड़ा सा बिल्डिंग जिसमें डोर और विंडोज लोग दिखाई दे रहा है।

उसमें दिखाई दे रहे हैं।

और एक वाइट कलर का बस दिखाई दे रहा है और वहां पर एक कार भी दिखाई दे रहा है जो की बस के सामने में है।

एक म्यूजियम है जहां पर एक ज़ेट फाइटर को रखा गया है।

व्हाइट पिलो भी दिखाई दे रहा है और वहां एक ब्लैंकेट भी दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू कलर का है।

और हमें एक दिखाई दे रहा है जो कि वाइट कलर का है।

और वहां पर लाइट्स लगा के दिखाई दे रहा है और एक चेयर दिखाई दे रहा है।

वहां पर वाटर बोतल दिखाई दे रहे हैं और वहां पर पैन्स भी दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर एक स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है और काउंटर के ऊपर बुक्स लोग दिखाई दे रहे हैं।

कंप्यूटर है और कागज से और स्टेपलर है और पेन दिखाई दे रहा है।

और वहां पर ब्लू कलर का बोर्ड चपका के है जिसमें एस_बी_आई लिख के दिखाई--

दे और वहां पर रोड दिखाई दे रहा है जिसमें दो लड़का चल के है फर्स्ट वाला पिंक कलर शर्ट पहन के है और सेकंड वाला का व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के है एक बैग पकड़ के दिखाई --

जो कि ब्लू कलर का है और वहां पर रोड भी दिखाई दे रहा है।

वहां पर बहुत सारा ट्रीज भी दिखाई दे रहा है।

और छोटा छोटा सा ग्रास लोग भी है।

एक गेमजोन है जहां पर बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

जो कि पूरा स्टील से बनाया गया है और एक के ऊपर एक रख के दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है जिसके सामने चार आदमी है।

और वहां एक बैग दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक लड़का खड़ा हो के है।

यहां पे तीन शॉप दिखाई दे रहे हैं जहां पर व्हाइट कलर का बड़ा सा बोर्ड चिपका के रखा हुआ है और उसमें गमसर डाइनिंग लिखा हुआ है।

फैन इलेक्ट्रिक कुकर ये सब बेचते हमें--

फूड फास्ट शॉप जोर रेस्टुरेंट है जहां पर खाने का चीज बेचते हैं।

वहां पर रेलिंग और सीरी भी दिखाई दे रहा है और वहां दरवाजा भी दिखाई दे रहा है वहां पर प्लांट्स लोग भी हैं।

यहां बहोत सारा आदमी खड़ा होके दिखाई दे रहा है।

और फ्लोर में कलरफुल डिजाइन टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

यह ग्रॉसरी स्टोर है जहां पर एक फ्रीजर भी दिखाई दे रहा है।

और वहां पर टेबल भी दिखाई दे रहा और टेबल के ऊपर में छोटा छोटा प्लांट्स भी दिखाई दे रहे--

एक फार्मेसी दिखाई दे रहा है जिसका छत पूरा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

एक साइकल का शोरूम है जहां पर फैंस और लाइट लगा के है।

यहां ब्लैक एंड रेड कलर का तिरपाल दिखाई दे रहा है उसका ऊपर में बहुत सारा मछली दिखाई दे रहा है छोटा बड़ा।